ऊपर एगो पंखा भी बा लाइटिंग वाइटिंग भी बड़ा निक बा। पीछेवा देखत बा की नारियल के एगो पेड़ों बा उका फोटो लगल बा फिर एको आदमी प्रार्थना करथ ह।

बड़ा निक सुंदर मंदिर बा। फेर अंदर-अंदर कुल समान ओगान भी बिकत बा बिसलेरी -ओसलेरी के बोटल भी दीखत बा एमे।

ख् रहे की कौनों मंदिरे ह। देखत बानी की बड़ा निक कलाकारी बा चारो ओर सफेद-सफेद कुल लउकत बा हमके। च् सोना नियर भी कुल चमकत ह।

फिर देखत बानी कि पेड़ वेड़ चारों ओर बा। अइसन हरियाली सब जगह होइ के। ई आसमनवो बड़ा नीक सुंदर हमके लौकत बा एमे।